यह एक बहुत बड़ा नद्दी के जैसा लग रहा है जो पीछे की तरफ पानी दिख रहा है।

यह मंदिर है और यहाँ --